सूखे झाड़ हैं पीले रंग के।

उसमें एक ग्रे कलर की ग्रील लगी हुई है।

और ग्रे रंग की हरी रंग की घास दिख रही है।